बहोत सारे पेर पौधे भी दिख रही हैं।

पत्थर भी दिखाई दे रही है।

फ्लर लाल रंग का है

पर्दा भी दिखाई दे रही है।

घर भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक ग्राउंड दिख रही है।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

बहोत सारे इंसान भी दिख रही है।

जिसने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

बाइक भी देग रही है।

बहोत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे स्कूटी दिक रही है।

पत्थर भी दिखाई दे रही है।

ऊपर में ब्रिज भी दिखाई दे रही है।

एक घरी भी दिखाई दे रही है झंडा भी दिखाई दे रही है।

दरवाजा भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारे घर दिख रही है बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रही है।

टीना भी दिख रही है।

पानी भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लाइट्स भी है।

मिट्टी भी दिख रही है।

एक घर का दरवाज़ा भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे पिलर भी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में बहोत सारे कपड़े देख रही है।

कपरा ग्रे कलर में भी दिग रही है।

बहोत सारे लोहे भी दिख रही है।

टीना भी दिखाई दे रही है।

एक सोफा भी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद और गोल्डन है।

बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रही है जिसका रंग पिंक और वाइट है।

बहुत सारे ट्यूब लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

नीचे में तर्ज भी लगाया हुआ है।

मिट्टी भी दिख रही है।